यहाँ पे एक दुकान है दुकान में बहुत सारे कबर्ड है उनमें पॉलीथिने रखी हुई है पॉलीथिनों में कपड़े रखे हुए है टेबल हैं।

काली है एक आदमी खड़ा हुआ है एक आगे बड़ा सा लोहै का डंडा पड़ा हुआ है एक लकड़ी पड़ी हुई है लड़के ने चश्मा लगाया हुआ है।

लगन के ऊपर एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है लाइटे लगी हुई है।